कोयला का यहाँ से कोयला जाता है। ईटा पत्थर वालो के लिए भी यहाँ बहुत सारा कोयला लगता है और काफी लोग यहाँ से कोयला ले जाते हैं। कोयला का यहाँ बहुत बड़ा डिपो है।

किताब का दुकान है। किताब पे सारी किताबें मिलती है।